वहां पर आग बुझाने के लिए--

एक दीवार में चीनी हुई है और इसके आर पार देखा जा सकता है इसके आर पार बहुत सी हरियाली--

ये देखो भाई साहब और ये क्रिकेट खेल रही है फुल टॉस बॉल डालती--